बहुत सुन्दर मंदिर है मंदिर में बहुत अच्छा लाइट लगाया हुआ है।

ये रास्ता है रास्ते में बहुत सारे आ रहे हैं कोई जा रहें कोई बाइक में है कोई फोर व्हीलर में।

ये दो ठो बैठा हुआ है दो खड़ा है।

ये मस्जिद है मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते है।

जिसको जगह नहीं मिल रहा नीचे वो ऊपर चढ़ गया है अ बस के बाहर भी बहुत लोग है।

यहाँ एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के --

ऊ मंदिर में फूल से सजाया हुआ है।